बहोत बड़े खेत में लगे हुए है।

एक लोहे का दरवाजा है।

इस फोटो में यह एक बहोत बड़ा मकान है।

एक मोटरसाइकल खड़ी हुई है।

एक हरे रंग का थमला भी लगा हुआ है।

एक दीवार पर बहुत बड़ा पंखा है।

दो कांच के शीशे रखे हुए है।

सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

एक स्टील की बहुत बड़ी छत है।

दो पर्दे लगे हुए हैं।

नीले रंग की टोपी भी रखी हुई है।

एक मोटरसाइकल खड़ी हुई है।

वो सारी लाल रंग की प्लास्टिक की बाल्टीए हैं।

एक सफेद रंग का बहोत बड़ा मकान है।

बहुत सारे लोहे के खंभे हैं।

बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है।

एक शिशा दीवार पर लगा हुआ है।

फोटो में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे पौधे हैं।

एक दीवार पर जय भगति इलेक्ट्रॉनिक स्टोर लिखा हुआ है।

एक नीले रंग का बॉक्स भी रखा हुआ है।

यह एक समुद्र का फोटो है।

दो लोहे के बहुत बड़े खंभे है।

द्वार पर लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारा पानी बह रहा है।